कुछ बैठने वाले कुछ साइकिलिंग वाले कुछ दौड़ने वाले और यहां पे एक कालीन है जो काफी साफ-सुथरा है। यहाँ पे बॉलिंग है जिससे कमर की एक्सर्साइज़ होती है।

यहां पर हर तरह के लोग आते हैं| अपना एन्जॉय करते है होटलो मे खाने पिने का एन्जॉय करते है।